इस इमेज में एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ नजर --

यहां पर बड़े से गणपति जी दिखाई दे रहे है।